रखा हुआ है यहाँ पे चारो तरफ टिन सेट है यहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीन रखी हुई है यहाँ पर--

यहाँ पर लाल यहाँ पर बड़े बड़े खम्बे लगे हुए है यहाँ पर--

किनारे बहुत सारे बड़े-बड़े छोटे छोटे पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चर्च है चर्च या कोई हॉस्टल या --